एस_बी_आई ए_टी_एम हैं जिसमे--

यह एक सिटी एरिया हैं ब्रिज ऊपर से पार हो रहा हैं ऊपर में भी निचे टेम्पू कार --

बहुत सारे लोग है जो शॉपिंग के लिए निकले है उसमे से स्टेचू है वो टी-शर्ट पहना हुआ शॉपिंग के ऊपर लिखा हैं प्लानेट फैशन --

वेन हैं लेकिन वेन न गाड़ी का टायर लगा हुआ हैं।

हैं कुछ एक देहाती लोग का आदमी हैं जो गमछा के साथ मेला देखने गया हैं।